मेरे प्यारे देशवासियो आप सबको नमस्कार
31 अक्तूबर हम सबके प्रिय सरदार वल्लभभाई पटेल की जयन्ती और हर वर्ष की तरह रुन फोर यूनिटी के लिए देश का युवा एकता के लिए दौड़ने को तैयार हो गया है
अब तो मौसम भी बहुत सुहाना होता है
यह रुन फोर यूनिटी के लिए जोश को और बढ़ाने वाला है
मेरा आग्रह है कि आप सब बहुत बड़ी संख्या में एकता की इस दौड़ में रुन फोर यूनिटी में अवश्य भाग लें
आज़ादी से लगभग साढ़े छह महीने पहले27 जनवरी 1947 को विश्व कीप्रसिद्ध इंटरनेशनल मैगज़ीन टाइम मैगज़ीन ने जो संस्करण प्रकाशित किया थाउसके कोवर पेज पर सरदार पटेल का फोटो लगा था
अपनी लीड स्टोरी में उन्होंने भारत का एक नक्शा दिया था और ये वैसा नक्शा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं
ये एक ऐसे भारत का नक्शा था जो कई भागों में बंटा हुआ था
तब 550 से ज्यादा देशी रियासते थीं
भारत को लेकर अंग्रेजों की रूचि ख़त्म हो चुकी थी लेकिन वो इस देश को छिन्नभिन्न करके छोड़ना चाहते थे
टाइम मैगज़ीन ने लिखा था कि भारत पर विभाजन हिंसा खाद्यान्न संकट महँगाई और सत्ता की राजनीति से जैसे खतरे मंडरा रहे थे
आगे टाइम मैगज़ीन लिखता है कि इन सबके बीच देश को एकता के सूत्र में पिरोने और घावों को भरने की क्षमता यदि किसी में है तो वो है सरदार वल्लभभाई पटेल
टाइम मैगज़ीन की स्टोरी लौह पुरुष के जीवन के दूसरे पहलुओं को भी उजागर करती है
कैसे उन्होंने 1920 के दशक में अहमदाबाद में आयी बाढ़ को लेकर राहत कार्यों का प्रबंधन किया
कैसे उन्होंने बारडोली सत्याग्रह को दिशा दी
देश के लिए उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता ऐसी थी कि किसान मजदूर से लेकर उद्योगपति तक सब उन पर भरोसा करते थे
गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि राज्यों की समस्याएँ इतनी विकट हैं कि केवल आप ही इनका हल निकाल सकते हैं और सरदार पटेल ने एकएक कर समाधान निकाला और देश को एकता के सूत्र में पिरोने के असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया
उन्होंने सभी रियासतों का भारत में विलय कराया
चाहे जूनागढ़ हो या हैदराबाद त्रावणकोर हो या फिर राजस्थान की रियासतें वे सरदार पटेल ही थे जिनकी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल से आज हम एक हिन्दुस्तान देख पा रहे हैं
एकता के बंधन में बंधे इस राष्ट्र को हमारी भारत माँ को देख करके हम स्वाभाविक रूप से सरदार वल्लभभाई पटेल का पुण्य स्मरण करते हैं
इस 31 अक्तूबर को सरदार पटेल की जयन्ती तो और भी विशेष होगी इस दिन सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम स्टेच्यू ओएफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे
गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित इस प्रतिमा की ऊँचाई अमेरिका के स्टेच्यू ओएफ लिबर्टी से दो गुनी है
ये विश्व की सबसे ऊंची गगनचुम्बी प्रतिमा है
हर भारतीय इस बात पर अब गर्व कर पायेगा कि दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा भारत की धरती पर है
वो सरदार पटेल जो जमीन से जुड़े थे अब आसमान कीभीशोभा बढ़ाएँगे
मुझे आशा है कि देश का हर नागरिक माँभारती की इस महान उपलब्धि को लेकर के विश्व के सामने गर्व के साथ सीना तानकरके सर ऊँचा करके इसका गौरवगान करेगा और स्वाभाविक है हर हिन्दुस्तानी को स्टेच्यू ओएफ यूनिटी देखने का मन करेगा और मुझे विश्वास है हिन्दुस्तान से हर कोने से लोग अब इसको भी अपना एक बहुत ही प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में पसंद करेंगे
मेरे प्यारे भाइयोबहनो कल ही हम देशवासियों ने इन्फैंट्री डे मनाया है
मैं उन सभी को नमन करता हूँ जो भारतीय सेना का हिस्सा हैं
मैं अपने सैनिकों के परिवार को भी उनके साहस के लिए सैल्यूट करता हूँ लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सब हिन्दुस्तान के नागरिक ये इन्फैंट्री डे क्यों मानते हैंयह वही दिन है जब भारतीय सेना के जवान कश्मीर की धरती पर उतरे थे और घुसपैठियों से घाटी की रक्षा की थी
इस ऐतिहासिक घटना का भी सरदार वल्लभभाई पटेल से सीधा सम्बन्ध है
मैं भारत के महान सैन्य अधिकारी रहे सम Manekshawका एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था
उस इंटरव्यू में फील्ड मार्शल Manekshawउस समय को याद कर रहे थेजब वो कर्नल थे
इसी दौरान अक्तूबर 1947 में कश्मीर में सैन्य अभियान शुरू हुआ था
फील्ड मार्शल Manekshawने बताया कि किस प्रकार से एक बैठक के दौरान कश्मीर में सेना भेजने में हो रहे विलम्ब को लेकर सरदार वल्लभभाई पटेल नाराज हो गए थे
सरदार पटेल ने बैठक के दौरान अपने ख़ास अंदाज़ में उनकी तरफ देखा और कहा कि कश्मीर में सैन्य अभियान में ज़रा भी देरी नहीं होनी चाहिये और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए
इसी के बाद सेना के जवानों ने कश्मीर के लिए उड़ान भरी और हमने देखा कि किस तरह से सेना को सफलता मिली
31 अक्तूबर को हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी की भी पुण्यतिथि है
इंदिराजी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि
मेरे प्यारे देशवासियो खेल किसको पसंद नहीं है
खेल जगत में स्पिरिट स्ट्रेंग्थ स्किल स्टैमिना ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं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
किसी देश के युवाओं के भीतर अगर ये हैं तो वो देश न सिर्फ अर्थव्यवस्था विज्ञान और technologyजैसे क्षेत्रों में तरक्की करेगा बल्कि sportsमें भी अपना परचम फहराएगा
हाल ही में मेरी दो यादगार मुलाकातें हुई
पहले जकार्ता में हुईAsian पारा गेम्स 2018 के हमारे पारा एथलीट्स से मिलने का मौका मिला
इन खेलों में भारत ने कुल 72 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया और भारत का गौरव बढ़ाया
इन सभी प्रतिभावान पारा Athletesसे मुझे निजी तौर पर मिलने का सौभाग्य मिला और मैंने उन्हें बधाई दी
उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और हर विपरीत परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ने का उनका जज़्बा हम सभी देशवासियों को प्रेरित करने वाला है
इसी तरह से अर्जेंटिना में हुई समर यूथ ओलम्पिक्स 2018 के विजेताओं से मिलने का मौका मिला
आपको ये जान करके प्रसन्नता होगी कि यूथ ओलम्पिक्स 2018 में हमारे युवाओं ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया
इस आयोजन में हमने 13 पदक के अलावा मिक्स इवेंट में 3 और पदक हासिल किये
आपको याद होगा कि इस बार एशियन गेम्स में भी भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था
देखिये पिछले कुछ मिनटों में मैंने कितनी बार अब तक का सबसे अच्छा अब तक का सबसे शानदार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया
ये है आज के भारतीय खेलों की कहानी जो दिनों दिन नई ऊचाईयाँ छू रही है
भारत सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है जिनके बारे में कभी सोचा तक नहीं गया था
उदाहरण के लिए मैं आपको पारा एथलीट नारायण ठाकुर के बारे में बताना चाहता हूँ
जिन्होंने 2018 के एशियन पारा गेम्स में देश के लिए एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है
वह जन्म से ही दिव्यांग है
जब 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया
फिर अगले 8 वर्ष उन्होंने एक अनाथालय में बिताये
अनाथालय छोड़ने के बाद ज़िन्दगी की गाड़ी चलाने के लिए डीटीसी की बसों को साफ़ करने और दिल्ली में सड़क के किनारे ढाबों में वेटर के तौर पर कार्य किया
आज वही नारायण इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं
इतना ही नहीं भारत की खेलों में उत्कृष्टता के बढ़ते दायरे को देखिये भारत ने जूडो में कभी भी चाहे वो सीनियर लेवल हो या जूनियर लेवल कोई ओलिंपिक मेडल नहीं जीता है
पर तबाबी देवी ने यूथ ओलम्पिक्स में जूडो में सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रच दिया
16 वर्ष की युवा खिलाड़ी तबाबी देवी मणिपुर के एक गाँव की रहने वाली है
उनके पिता एक मजदूर हैं जबकि माँ मछली बेचने का काम करती है
कई बार उनके परिवार के सामने ऐसा भी समय आया जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे
ऐसी परिस्थितियों में भी तबाबी देवी का हौसला डिगा नहीं सकी
और उन्होंने देश के लिए मेडल जीत कर इतिहास रचा है
ऐसी तो अनगिनत कथाएँ हैं
हर एक जीवन प्रेरणा का स्रोत है
हर युवा खिलाड़ी उसकाजज़्बा न्यू इंडिया की पहचान है
मेरे प्यारे देशवासियो आप सब को याद होगा कि हमने 2017 में फिफा Under17 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन किया था
पूरे विश्व ने बेहद सफल टूर्नामेंट के तौर पर उसे सराहा भी था
फिफा Under17 वर्ल्ड कप में दर्शकों की संख्या के मामले में भी एक नया कीर्तिमान रच दिया था
देश के अलगअलग स्टेडियम में 12 लाख से अधिक लोगों ने फुटबॉल मैचों का आनंद लिया और युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया
इस वर्ष भारत को भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के आयोजन का सौभाग्य मिला है
Hockey वर्ल्ड कप 28 नवम्बरसे प्रारंभ हो कर 16 दिसम्बरतक चलेगा
हर भारतीय चाहे वह कोई भी खेल खेलता हो या किसी भी खेल में उसकी रूचि हो हॉकी के प्रति एक लगाव उसके मन में अवश्य होता है
भारत का हॉकी में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है
अतीत में भारत को कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक मिले हैं और एक बार विश्व कप विजेता भी रहा है
भारत ने हॉकी को कई महान खिलाड़ी भी दिए हैं
विश्व में जब भी हॉकी की चर्चा होगी तो भारत के इन महान खिलाड़ियों के बिना हॉकी की कहानी अधूरी रहेगी
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से तो पूरी दुनिया परिचित है
उसके बाद बलविंदर सिंह सीनियर लेस्ली क्लौड़ीयसLeslie क्लॉडियस मोहम्मद शाहिद उधमसिंह से लेकर धनराज पिल्लई तक हॉकी ने एक बड़ा सफ़र तय किया है
आज भी टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने परिश्रम और लगन की बदौलत मिल रही सफलताओं से हॉकी की नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं
खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक मैचेस को देखना एक अच्छा अवसर है
भुवनेश्वर जाएँ और न सिर्फ भारतीय टीम का उत्साहबढ़ाएँ बल्कि सभी टीमों को प्रोत्साहित करें
ओड़िशा एक ऐसा राज्य है जिसका अपना गौरवपूर्ण इतिहास है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और वहाँ के लोग भी गर्म जोशी भरे होते हैं
खेल प्रेमियों के लिए ये ओड़िसा दर्शन का भी एक बहुत बड़ा अवसर है
इस दौरान खेलों का आनंद उठाने के साथ ही आप कोणार्क के सूर्य मंदिर पुरी में भगवान् जगन्नाथ मंदिर और चिल्का लेक समेत कई विश्वप्रसिद्ध दर्शनीय और पवित्र स्थल भी जरुर देख सकते हैं
मैं इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सवासौ करोड़ भारतीय उनके साथ और उनके समर्थन में खड़े हैं व भारत आने वाली विश्व की सभी टीमों को भी बहुतबहुत शुभकामनाएं देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो सामाजिक कार्य के लिए जिस प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं इसके लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं
वो पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणादायक हैं जोश भरने वाला है
वैसे सेवा परमो धर्मःये भारत की विरासत है
सदियों पुरानी हमारी परंपरा है और समाज में हर कोने में हर क्षेत्र में इसकी सुगंध आज भी हम महसूस करते हैं
लेकिन नए युग में नए तरीके से नई पीढ़ी नए उमंग से नए उत्साह से नए सपने लेकर के इन कामों को करने के लिए आज आगे आ रही है
पिछले दिनों मैं एक कार्यक्रम में गया था जहाँ एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सेल्फ 4 सोसाइटी MyGovऔर देश की इत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने अपने एम्प्लॉइज को सोशल एक्टिविटीज के लिए motivateकरने और उन्हें इसके अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है
इस कार्य के लिए उनमें जो उत्साह और लगन है उसे देख कर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा
इत टो Societyमैं नहीं हम अहम् नहीं वयम् स्व से समष्टि की यात्रा की इसमें महक है
कोई बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई बुजुर्गों को पढ़ा रहा है कोई स्वच्छता में लगा है तो कोई किसानों की मदद कर रहा है और ये सब करने के पीछे कोई लालसा नहीं है बल्कि इसमें समर्पण और संकल्प का निःस्वार्थ भाव है
एक युवा ने तो दिव्यांगों कीव्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की मदद के लिए खुद व्हीलचेयर बास्केटबॉल सीखा
ये जोजज़्बा है ये जो समर्पण है ये मिशन मोडे एक्टिविटी है
क्या किसी हिन्दुस्तानी को इस बात का गर्व नहीं होगा जरुर होगा मैं नहीं हम की ये भावना हम सब को प्रेरित करेगी
मेरे प्यारे भाइयोबहनो इस बार जब मैं मन की बात को लेकर आप लोगों के सुझाव देख रहा था तो मुझे पुडुचेरी से श्री मनीष महापात्र की एक बहुत ही रोचक टिप्पणी देखने को मिली
उन्होंने Mygovपर लिखा हैकृपया आप मन की बात में इस बारें में बात कीजिये कि कैसे भारत की जनजातियाँ उनके रीतिरिवाज और परंपराएँ प्रकृति के साथ सहअस्तित्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे उनके traditionsको हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता हैउनसे कुछ सीखने की जरुरत है
मनीष जी इस विषय को मन की बात के श्रोताओं के बीच रखने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ
यह एक ऐसा विषय है जो हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत और संस्कृति की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है
आज सारा विश्व विशेष रूप से पश्चिम के देश पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहे हैंऔर संतुलित जीवनशैली बैलेंस लाइफ के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं
वैसे आज हमारा भारतवर्ष भी इस समस्या से अछूता नहीं है लेकिन इसके हल के लिए हमें बस अपने भीतर झाँकना है अपने समृद्ध इतिहास परंपराओं को देखना है और ख़ासकर अपने जनजातीय समुदायों की जीवनशैली को समझना है
प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर के रहना हमारे आदिवासी समुदायों की संस्कृति में शामिल रहा है
हमारे आदिवासी भाईबहन पेड़पौधों और फूलों की पूजा देवीदेवताओं की तरह करते हैं
मध्य भारत की भील जनजाति में विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग पीपल और अर्जुन जैसे पेड़ों की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं
राजस्थान जैसी मरुभूमि में बिश्नोई समाज ने पर्यावरण संरक्षण का रास्ता हमें दिखाया है
खासतौर से वृक्षों के संरक्षण के संदर्भ में उन्हें अपने जीवन का त्याग करना मंजूर है लेकिन एक भी पेड़ का नुकसान पहुँचे ये उन्हें स्वीकार नहीं है
अरुणाचल के मिशमीबाघों के साथ खुद का रिश्ता होने का दावा करते हैं
उन्हें वो अपना भाईबहन तक मानते हैं
नागालैंड में भी बाघों को वनों के रक्षक के रूप में देखा जाता है
महाराष्ट्र के वार्ली समुदाय के लोग बाघ को अतिथि मानते हैं उनके लिए बाघों की मौजूदगी समृद्धि लाने वाली होती है
मध्य भारत के कोल समुदाय के बीच एक मान्यता है कि उनका खुद का भाग्य बाघों से जुड़ा है अगर बाघों को निवाला नहीं मिला तो गाँव वालों को भी भूखा रहना पड़ेगा ऐसी उनकी श्रद्धा है
मध्य भारत की गोंड जनजाति ब्रीडिंग सीजन में केथन नदी के कुछ हिस्सों में मछली पकड़ना बंद कर देते हैं
इन क्षेत्रों को वो मछलियों का आश्रय स्थान मानते हैं इसी प्रथा के चलते उन्हें स्वस्थ और भरपूर मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं
आदिवासी समुदाय अपने घरों को नैचुरल मटीरियल से बनाते हैं ये मजबूत होने के साथसाथ पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं
दक्षिण भारत के नीलगिरी पठार के एकांत क्षेत्रों में एक छोटा घुमन्तु समुदाय तोड़ा पारंपरिक तौर पर उनकी बस्तियाँ स्थानीय स्थर पर उपलब्ध चीजों से ही बनी होती हैं
मेरे प्यारे भाइयोबहनो ये सच है कि आदिवासी समुदाय बहुत शांतिपूर्ण और आपस में मेलजोल के साथ रहने में विश्वास रखता है पर जब कोई उनके प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान कर रहा हो तो वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से डरते भी नहीं हैं
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे सबसे पहले स्वतंत्र सेनानियों में आदिवासी समुदाय के लोग ही थे
भगवान बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है जिन्होंने अपनी वन्य भूमि की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ कड़ा संघर्ष किया
मैंने जो भी बातें कहीं हैं उनकी सूची काफ़ी लम्बी है आदिवासी समुदाय के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे रहा जाता है और आज हमारे पास जो जंगलों की सम्पदा बची है इसके लिए देश हमारे आदिवासियों का ऋणी है
आइये हम उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करें
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में हम उन व्यक्तियों और संस्थाओं के बारें में बाते करते हैं जो समाज के लिए कुछ असाधारण कार्य कर रहेहैं
ऐसे कार्य जो देखने में तो मामूली लगते हैं लेकिन वास्तव में उनका गहरा प्रभाव पड़ता है
हमारी मानसिकता बदलने में समाज की दिशा बदलने में
कुछ दिन पहले मैं पंजाब के किसान भाई गुरबचन सिंह जी के बारे में पढ़ रहा था
एक सामान्य और परिश्रमी किसान गुरबचन सिंह जी के बेटे का विवाह था
इस विवाह से पहले गुरबचन जी ने दुल्हन के मातापिता से कहा था कि हम शादी सादगी से करेंगे
बारात हों और चीजें हों खर्चा कोई ज्यादा करने की जरुरत नहीं है
हमें इसे एक बहुत सादा अवसर ही रखना है फिर अचानक उन्होंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है और आजकल जब शादीब्याह के समय शर्त की बात आती है तो आमतौर पर लगता यही है कि सामने वाला कोई बड़ी माँग करने वाला है
कुछ ऐसी चीजें माँगेगा जो शायद बेटी के परिवारजनों के लिए मुश्किल हो जाएँ लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा ये तो भाई गुरबचन सिंह थे सादेसीधे किसान उन्होंने दुल्हन के पिता से जो कहा जो शर्त रखी वो हमारे समाज की सच्ची ताकत है
गुरबचन सिंह जी ने उनसे कहा कि आप मुझे वचन दीजिये कि अब आप खेत में पराली नहीं जलायेंगे
आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी सामाजिक ताकत है इसमें
गुरबचन सिंह जी की ये बात लगती तो बहुत मामूली है लेकिन ये बताती है कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल है और हमने देखा है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत परिवार होते हैं जो व्यक्तिगत प्रसंग को समाज हित के प्रसंग में परिवर्तित करते हैं
श्रीमान् गुरबचन सिंह जी के परिवार ने वैसी एक मिसाल हमारे सामने दी है
मैंने पंजाब के एक और गाँव कल्लर माजरा के बारे में पढ़ा है जो नाभा के पास है
कल्लर माजरा इसलिए चर्चित हुआ है क्योंकि वहाँ के लोग धान की पराली जलाने की बजाय उसे जोतकर उसी मिट्टी में मिला देते हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी उपयोग मेंलानी होती है वो जरूर लाते हैं
भाई गुरबचन सिंह जी को बधाई
कल्लरमाजरा और उन सभी जगहों के लोगों को बधाई जो वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास कर रहें हैं
आप सब स्वस्थ जीवनशैली की भारतीय विरासत को एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं
जिस तरह बूंदबूंद से सागर बनता है उसी तरह छोटीछोटी जागरुक और सक्रियता और सकारात्मक कार्य हमेशा सकारात्मक माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे ग्रंथों में कहा गया है
ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिःशान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि
शान्तिशान्ति
इसका अर्थ है हे ईश्वर तीनों लोकों में हर तरफ शांति का वास हो जल में पृथ्वी में आकाश में अंतरिक्ष में अग्नि में पवन में औषधि में वनस्पति में उपवन में अवचेतन में सम्पूर्ण ब्रह्मांड में शान्ति स्थापित करे
जीवमात्र में हृदय में मुझ में तुझ में जगत के कणकण में हर जगह शान्ति स्थापित करें
शान्ति शान्ति
जब कभी भी विश्व शान्ति की बात होती है तो इसको लेकर भारत का नाम और योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित दिखेगा
भारत के लिए इस वर्ष 11 नवम्बर का विशेष महत्व है क्योंकि 11 नवम्बर को आज से 100 वर्ष पूर्व प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समाप्ति को 100 साल पूरे हो रहे हैं यानी उस दौरान हुए भारी विनाश और जनहानि की समाप्ति की भी एक सदी पूरी हो जाएगी
भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी
सही मायने में कहा जाए तो हमारा उस युद्ध से सीधा कोई लेनादेना नहीं था
इसके बावजूद भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिका निभाई सर्वोच्य बलिदान दिया
भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वह किसी से पीछे नहीं हैं
हमारे सैनिकों ने दुर्गम क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में भी अपना शौर्य दिखाया है
इन सबके पीछे एक ही उद्देश्य रहा शान्ति की पुन स्थापना
प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया ने विनाश का तांडव देखा
अनुमानों के मुताबिक क़रीब 1 करोड़ सैनिक और लगभग इतने ही नागरिकों ने अपनी जान गंवाई
इससे पूरे विश्व ने शान्ति का महत्व क्या होता है इसको समझा
पिछले 100 वर्षों में शान्ति की परिभाषा बदल गई है
आज शान्ति और सौहार्द का मतलब सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है
आतंकवाद से लेकर जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक न्याय इन सबके लिए वैश्विक सहयोग और समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है
ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति का विकास ही शांति का सच्चा प्रतीक है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे नॉर्थ Eastकी बात ही कुछ और है
पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपम है और यहाँ के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली है
हमारा नॉर्थ Eastअब तमाम बेस्ट डीड्स के लिए भी जाना जाता है
नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसने आर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत उन्नति की है
कुछ दिन पहले सिक्किम में सस्टेनेबल फूड सिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिष्ठित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 जीताहै
यह अवार्ड सयुंक्तराष्ट्र से जुड़े faओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है
आपको यह जानकार प्रसन्नता होगी इस सेक्टर में बेस्ट पॉलिसी मेकिंग के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार उस क्षेत्र में ओस्कार के समान है
यही नहीं हमारे सिक्किम ने 25 देशों की 51 नॉमिनेटेड पॉलिसियों को पछाड़कर यह अवार्ड जीता इसके लिए मैं सिक्किम के लोगों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियोअक्तूबर समाप्ति पर है
मौसम में भी बहुत परिवर्तन अनुभव हो रहा है
अब ठंड के दिन शुरू हो चुके हैं और मौसम बदलने के साथसाथ त्योहारों काभी मौसम आ गया है
धनतेरस दीपावली भैय्यादूज छठ एक तरीके से कहा जाए तो नवम्बर का महीना त्योहारों का ही महीना है
आप सभी देशवासियों को इन सभी त्योहारों की ढ़ेर सारी शुभकामनाएँ
मैं आप सब से आग्रह करूँगा इन त्योहारों में अपना भी ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और समाज के हितों का भी ध्यान रखें
मुझे विश्वास है कि यह त्योहार नए संकल्प का अवसर है
यह त्योहारनए निर्णयों का अवसर है
यह त्योहार एक मिशन मोडे में आगे जाने का दृढ़ संकल्प लेने का आपके जीवन में भी अवसर बन जाए
आपकी प्रगति देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा है
आपकी जितनी ज़्यादा प्रगति होगी उतनी ही देश की प्रगति होगी
मेरी आप सबको बहुतबहुत शुभकामनाएँ
बहुतबहुत धन्यवाद